रंजन मशीनरी की दुकान भी दिखाई दे रही है जो की इधर बहुत ही डेकोरेटेड किया गया है | कुछ गाड़ियां पार्किंग भी है य --

बहोत ही मतलब मस्त वाला लुक आउट दे रहा ओ --

ये एक अअअ झरना टाइप दिखाई दे रहा है।

नी बाइक से होते हुए इधर से गुजर रहे हैं |